और अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा माहौल है छठ के पूजा के अवसर--

और एक और रोड पिंच रोड बना हुआ है खूबसूरत है।

इस तस्वीर में ऐसा लगता है कि हम देख रहे हैं की चिड़ियाघर है इसमें मोर है मोर है।

बोर्ड पर नेख के पास जो है मैडम पढ़ा रही है बै--

किस एरिया में है वह मुझे मैं नहीं बता सकता हूं।

आगमन है आना जाना है मे मेला में मोटरसाइकिल लगी हुई है चारों तरफ जो है तिरपाल उरपाल गिरा हुआ है।

लेटेस्ट डिजाइन की साड़ियां हैं है ना कुछ पैकेट में पैक हैं।

घर दिखाई दे रहे हैं घर इसी तरह का हमारा भी होना चाहिए ये कलर जो है पीला टाइप का है उसके बाद जो है चारों तरफ गार्डन है।

होटल में इतना लाइट लगे हुई है की जग मग की रहा है है ना सुंदर है।